और और हमको इस पर एक लाइट का बोर्ड भी लगा हुआ दिख रहा है और इसमें ग्रीन कलर दीवाल पर है।

सामने कुछ एल_ई_डी बल्ब और एडजस्ट फैन भी लगे हुए दिख रहे हैं।

ऊपर कुछ टेडी रखें हुए दिख रहे हैं और कुछ डॉगी के टेडी भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक चैनल कांच का गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

हमको यह एक ढाबा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे है।

कुछ नमकीन के पैकट भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो की रस्सी पर टंगे हुए देख रहे हैं।